बहोत सारे आदमी कुर्सियों पर बैठे हैं और बहोत सारे खड़े दिखाई दे रे है।

यहां बहोत सारे अलमारी से भी रखी दिखाइए--

यहां यह बहोत बड़ी दुकान नजर आ रही है।

और बहोत सारे शीशे के दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े बोरड भी नजर आ रहे हैं।

बजते है और बहुत सुंदर सा पारक सा दिखाई दे --

यह एक फोन की दुकान दिखाई दे रही है।

गमले से भी नजर आ रहे हैं।

बहोत सुंदर पार्क भी दिखाइ दे रहा है।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

और लाइटें भी चस्स रही है।

यह चप्पल जूतियों की दुकान दिख रही है।

और एक बहोत बड़ा सा टोल भी रखा हुआ है।

और बहुत सुंदर दुकान दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारी भीड़ हो रही है।

अलग अलग डिब्बे भरे पड़े हैं।

यह बहोत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आ रही है।

और यहां बहोत सुंदर सुंदर गमले भी रखे हुए हैं।

यहां बहोत सारी ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है।